इस तस्वीर में सामने एक मेडिकल दिख रहा।

टेबल जो है व्हाइट कलर का है लकड़ी का।

सीढ़ी छोड़ के गेट बनाया हुआ है।

घर के बाहर में कारपेट बिछाया गया है बहुत बड़ा सा।

यह कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान है।

शाम का समय हो रहा है।

यह कोई घाट का सीन दिखाई दे रहा है।

बहोत सारे पहाड़ भी दिख रहे हैं झंडा भी दिख रहे हैं एक आंटी क्रॉस हो रही है यहां से।

जो की पीला कलर का है एक सामने जो बिल्डिंग बनाया गया है वह क्रीम कलर का है यहां पर बहुत सारा गाड़ी पार्क किया हुआ है।

पीला व्हाइट कलर में है दिन का समय हो रहा है नीला आसमान है।

इस रूम में एक पंखा भी लगाया हुआ हैं जो कि व्हाईट कलर का है।

इस तस्वीर में दिखाया गया हैं कि--

बहुत सारे लोग भी चल रहे है रोड पे बिल्डिंग में खिड़कियां भी दिख रही है।

जिसमें लिखा गया है केदारनाथधाम।

बहुत सारे बाइक पार्क किए हुए हैं।

बगल में पियानो और हारमोनियम रखा गया है।

इस पिक्चर में बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

ऐसा लग रहा है कि पुराना कोई हवेली है बाहर--

दुकान में बहुत सारे काउंटर्स बनाए गए हैं जिसमें बहुत सारे कॉपी किताब रखे गए हैं एक मंदिर बनाया गया है दुकान में एक लाइट जल रहा है बड़ा सा।

दिन का समय हो रहा है।

बहुत सारे लोग खड़े हैं।

एक लेडीज को ट्रॉफी दिया जा रहा है।

यहां पर टेबल बनाया गया है।

इसपे बहुत सारे सामान रखे हुए हैं।

जैसे कि पर्पल येलो रेड ऐसा लग रहा है कि कोई सेलिबेटरी आया है।

सामने बहुत सारे सेल्फ बनाए हुए है।

रेलवे स्टेशन का सीन दिखाई दे रहा है।

उसके बगल में दूल्हा खड़ा है।